एक पुराना किला बना हुआ है और कुछ सीढियाँ है। उस पर ल् लोग बैठे हुए है कुछ लोग खड़े हुए है। दीवारों का रंग लालवा है और कुछ काई लगी हुई है।

रेलवे की पटरी है| उस पर रेलवे का एक घर बना हुआ है| कुछ लोग खड़े हुए हैं| दो बाइके एक अंदर बाइक रखी हुई है एक बाहर रखी हुई है।

सामने एक दुकान बनी हुई है। जो जिसपे काले कलर के कपड़े से लेके सफ़ेद और कुछ धरियो वाले कपड़े ले रखे हुए हैं।

एक काउंटर पर बोतले रखी हुई है और उस पंखे का रंग सफ़ेद है सामने दुकाने लगी हुई है और कुछ घर बने हुए ऐं --